फ्लावर पॉट है एक ग्रीन कलर का पॉट है और फोन पे का स्कैनर रखा हुआ है।

और जिसपे जिसपे व्हाइट प्लेट है और उस पर बिरयानी रखी हुई --

खिड़की है व्हाइट कलर की और कलर की है और यहां पे--

और यहां पे एक टिना लगा हुआ है जिसके नीचे एक छेद है पटरी भी है।

यहां पे बहुत सारे घर भी हैं यहां पे टंकी भी लगे हुए हैं।

इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे सैमसंग का मोबाइल दिख रहा है और--

पटरी दुचक्का का दुकान है जहां पे बहोत सारे चक्का रखा हुआ है।